विंडो के बगल में चैना लगा हुआ है चैनर के नीचे जीना है।

यह सब्जी की दुकान है यहां पे मिनरल वाटर रखे हुए हैं आलू रखा हुआ है।

यहां पर लोहे का गेट लगा हुआ है।

लौकी रखी हुई है शिमला रखा हुआ है लोबिया रखी हुई है।

व्हाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है पूरा लाइब्रेरी व्हाइट कलर से पे--

यह थिएटर का फोटो है थिएटर में चार पांच आदमी बैठे हुए हैं।

मनीप्लांट का भी एक पेड़ रखा दिख रहा हैं।

यह कैरम क्लब है यहां पर दस आदमी है।

ट्रेन वाले झूले के बगल में लाल पर्दे लगे हुए हैं।

दो बसे खड़ी हुई हैं। बस पे एक सीढ़ी लगी हुई है। बसे ट्रेवल्स की है।

पीछे वाली गाड़ी पीले कलर से पेंट की हुई है।

बगल में एक न्यू बिल्डिंग बन रही है।

दीवार की पट्टी रेड कलर से की पुती हुई है और पीले कलर की दीवाल है।

यह मॉल का फोटो है यहां पर तीन चार आदमी एक लेडिस दिख रही है।

और ब्लैक कलर का बाउंड्री का बॉर्डर बना हुआ है।

घड़ी के इस पार एक पाइप में एक घंटा बंधा हुआ है।

घास के उस पार थोड़ा मैदान पड़ा है।

कौवे लगे हुए हैं केले का पेड़ है।